यहाँ पर पेंटिंग हुई है पीले कलर पेंटिंग भी है और एक अ सुन -- काले - काले कलर की भी पेंटिंग है यहाँ पर बहोत सारी पेंटिंग हुई है यहाँ पर जीप भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर यहाँ पर ये दूसरे रूम में भी एक डब्बा - सा रखा हैं।